जिम में एक आदमी अपनी बोडी दिखा रहा है और उसके साथ में ही बहोत सारे मशीनें रखी हुई हैं।

हरियाली है कच्चे मिट्टी है पत्तियों का रंग हरा है आसमान नीले और --

बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं एक महिला ने लार रंग के कपड़े पहने हु --

बस स्टैंड पर बहुत सारी बसेस खड़ी है जिनमें सफेद हरा रंग किया हुआ है जिनमें चारों तरफ --

हरियाली है पतियों का रंग हरा है आसमान --

सफेद रंग का है आसपास बड़े-बड़े छोटे-छोटे पत्थर गिरे हुए हैं और चट्टाने बनी हुई हैं जो कि बहोत --

छोटा-सा बागीचा बनाया हुआ है जिसमें फूल लगाए हुए हैं फूलों पे ल लाल --

सड़क के किनारे ओयो होटल को गोवा लिखा हुआ है जिसमें --

उसके नंबर प्लेट की जीए जीरो वन जेड ट्रेड तेहतर लिखा हुआ है और बस का रंग --

सफेद और गुलाबी है जिसके साथ में ही एक सफेद और नीले रंग की बस खड़ी है आसमान नीले रंग --

भारतीय स्टेट बैंक लिखा हुआ है जिसके बाहर दो बूढ़े आदमी और औरत बैठे हुए हैं जिन्होंने --

एक नाई की दुकान में आदमी ने अपनी फोटो खिंचवाई है जिसने चारों तरफ --

एक आंख काले रंग की है और उसने मुंह पर दाढ़ी भी नहीं है वह क्लीन शेव है चारों तरफ --

सड़क के किनारे एक चर्च बना हुआ है जिसमें प्लस का साइन बना है नीचे भूमि पर सफेद और काले रंग के गोलाकार टाइलें लगाई हुई हैं।

केले के पेड़ लगे हुए हैं पत्तियों का रंग हरा है कुछ पत्तियाँ लाल और पीले रंग की हैं जो देखने में बहोत ही खूबसूरत लग रही --

बड़े से समुंदर में एक बड़ी नाव खड़ी है जिसने चारों तरफ लोग उसे चला रहे हैं और बहुत सारे बूढ़े और --

पीले सफेद और नीले रंग का है जो कि बहो --

चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं पत्तियों का रंग हरा है आसमान सफेद और नीले रंग का है जो कि बहोत ही खूब --

चारों तरफ पानी की नदी बह रही है और हरियाली है पत्तियों का रंग हरा है किनारों पर --

सड़क के किनारे मंदिर बना हुआ है जिसमें लाल कारपेट बिछाया --

बड़ा-सा होल है जिसने पीले और सफेद रंग के टेंट लगाए हुए हैं चारों तरफ मूर्तियाँ बनी हुई हैं।

सड़क के किनारे बैंक ऑफ़ बड़ोदा लिखा हुआ है जिसके बाहर एक महीला और पुरुष जा रहे हैं आसपास --

गुलाबी रंग की बोतल रखी हुई है एक आदमी कांच के ग्लास में चाय पी रहा है आसपास बालटिया है।

इहै चारों तरफ बिजली के खंबे और तारें बनी हुई हैं।